कुछ पेड़ है कुछ पाइप है।

एक फ्लावर है ऊपर कुछ फ्रेम है पर्दा है।

लोहे के दो बैठने के स्टैंड है पीले कलर का पिल्लर है ऊपर तार है कांच है एक लड़का खड़ा है सिडिया है।

यहाँ एक जियो का बोर्ड है उसमे बंगला मे कुछ लिखा है एक गाड़ी पे दो जण बैठे है।

वहा पे इलैक्ट्रिक बोर्ड है कुछ हरे और नील कलर के डम्ब्ल्स है आयना है।

एक औरत चाबी ले रही है लोखंडी गेट है।

एक इंसान के पेयर दिखाई दे रहे है। उसने काले कलर का सोक्स पहना है। गूलबी सफ़ेद कलर का पर्दा है।

एक गुलाबी टॉवेल है एक रंगीबेरंगी टॉवेल है खिड़की पे ब्लुटूथ लटक रहा है।

लाल कलर की चेयर है गुलाबी बैग है कुछ मशीनरी है।